यह एक विद्यालय का दृश्य है विद्यालय के आगे हरे-भरे घास का एक मैदान भी है सामने दो नारियल के पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने तीन-चार कुर्सियां लगी हुई है दो महिलाएं बैठी हुई है बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा है।

सामने एक दीवार दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है। बीच में झूमर लगे हुए हैं सामने लालटेन का बहुत सारा झूमर बना हुआ है।

यहाँ पे तीन चार छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं | इसके छत ब्लू कलर के त्रिभुजा आकर में हैं | छोटे छोटे बलून से सजाया गया है |

यहाँ बहुत सारा जल का बहाव दिख रहा है इसके किनारे पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है | चल के किनारे पे बहुत सारे घास डले हुए हैं | सामने आसमान दिखाई दे रहा है |